इस पार्किंग साइड में बहुत सारे गाड़ियां भी लगी हुई हैं।

यह किसी रेस्टोरेंट का पिक्चर दिखाया जा रहा है।

यह एक स्कूल काफोटो है।

जिसमें असेंबली टाइम का फोटो लिया गया है।

सारे बच्चे परेड करते हुए नजर आ रहे हैं।

जिसमें बहुत सारे लोग कैंडल जला रहे हैं और कुछ लोग बाहर बातें कर रहे हैं।

ये चर्च अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में--

और लगता है सभी लोग प्रार्थना कर रहे है।

यह किसी का नए घर काफोटो है।

इस घर में लगता है एक कुंआ भी खुदवाया जा रहा है।

गेट की सजावट भी अच्छी लग रही है।

यह कोई पार्क का फुटपाथ एरिया है।

जिसकी सजावट काफी अच्छे से की गई है।

पैर पौधे देखने में भी अच्छे लग रहे हैं।

और इस पर ब्रिज भी बनाया गया है।

और यह गोदली का बेला है।

अंदर से इसका सर्विस भी शायद अच्छा होगा।

कुछ बच्चे इसमें पढ़ भी रहे हैं।

न्यू मॉडल में यह लाइब्रेरी तैयार किया गया है।

हो सकता है यहाँ पर म्यूजिक सिखाया जाता हो।

यहाँ पिलर बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं।

यह एक गराज शअगराज सेंटर है।